पे ठेंगा कुछ उठा हुआ है चदर जैसे जिसके निचे एक गेट्स खड़ा हुआ हैं टाई और शर्ट पहनी हुई है ब्लैक जीन्स पहना हुआ है और मतलब बोहत बड़ा लाइट वगेरा बोहोत सारी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहुत सारा सा दिखाई दे रहा है बोरा जैसी रखी हुई है कोई चेयर पर बैठा हुआ है और बहुत सारे सामान यहां पे रखे हुए है।

काँच का ए नि आगे बना हुआ है और यहाँ पर एक चेयर दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक कलर की और ब्लैक कलर का इसका ओ पहना हुआ है टॉवल ।

और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा बस एक ये स्टेज है जो की रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसपे ये जेन्स खड़ा हुआ है।

एक मंदिर जैसा बना हुआ है जो की वाइट कलर का दिखाई दे रहा है एक ट्रॉफी जैसी रखी हुई है और यहाँ पे काफी सारी पब्लिक दिख रही है।

ये पेन वगेरा पेन की शॉप है स्टेशनरी है ये पेन वगेरा यहाँ पे मिल बिक रहे है कोई बेच रहा है उनको और यहाँ पे पेन उनकी पॉकेट में रखे हुवे है।

यहां पर बहुत सारे सामान वगेरा रखे हुए हैं और ये हम लोग को जेल दिखाइ दे रही है ये लकड़ियों की बनी हुई है या फैन दिखायी दे रहा है।

यहाँ पे एक घर जैसे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक जेंट्स बैठा है एक लेडीज बैठी है जेंट्स के हाथ में कुछ रखा हुआ है और मतलब ये नीचे चेयर पे बैठे हुए है और एक खिड़की जैसे दिखाई दे रही है और --

यहाँ पे एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है और जिसमे बहुत सारी स्टेशनरी रखी हुई है दो लोग यहाँ पर बैठे हुए है दोनों फोटो वैगरह ले रहे है एक को चस्मा लगा हुआ है एक ऐसे ही बैठा हुआ है ऐ सी यहाँ पे लगी हुई है।

क्योकि सभी को मास्क लगे हैं सभी ग्रीन ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं जो की डॉक्टर लोग ऑपरेशन में पहनते हैं इसे और ये हॉस्पिटल ही लग रहा है पूरा।

और गाड़ी व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है पहिए वगैरा दिखाई दे रहे है और ये बहुत बड़ा घर जैसा दिखाई कम मतलब वो दिखाई दे रहा है वो--